नमस्कार multidimensional arrays in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम awk में multidimensional array बनाना और multidimensional array स्कैन करना सीखेंगे
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको इस website पर array पर पिछले awk tutorials को देखना चाहिए
आपको किसी भी programming भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए जैसे c या c ++
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
awk में multidimensional array क्या है
हम जानते हैं कि single dimensional arrays में single index द्वारा एक array element निर्धारित किया जाता है
उदाहरणस्वरूप array week single index day द्वारा निर्धारित किया जाता है
हालाँकि multidimensional array में एक element multiple indices के क्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है
उदाहरणस्वरूप two dimensional array element 2 indices के क्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है
यहाँ multiple indices उनके बीच में separator के साथ single string में श्रृंखलित हैं
separator builtin variable subsep की value है
संयुक्त string का उपयोग सामान्य one dimensional array के लिए single index के रूप में किया जाता है
उदाहरणस्वरूप हम लिखते हैं multi square brackets में 4 comma 6 equal to value double quotes में
यहाँ multi multidimensional array का name है
मान लीजिए subsep की value hash symbol # है
फिर वो संख्याएं उनके बीच में hash symbol # के साथ श्रृंखलित हो जाती है
अतः array element multi square brackets में double quotes में 4 hash 6 value double quotes में set हो जाता है
subsep की default value string double quotes में backslash 034 है
वास्तव में यह nonprinting character है यह ज्यादातर इनपुट डेटा में आमतौर पर दिखाई नहीं देगा
slide में दिखाए गए अनुसार two dimensional array घोषित करते हैं
row 1 में दो elements a और b हैं
row 2 में दो elements c और d हैं
ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उस folder पर जाएं जिसमें आपने code files downloaded और एक्स्टैक्ट की है
अब निम्न रूप से array का परिभाषित करें यहाँ दिखाए गए अनुसार command को ध्यानपूर्वक type करें फिर एंटर दबाएं
हमें बिना किसी error के command prompt वापस मिलता है अतः array परिभाषित हो गया है
हमें कोई भी output नहीं मिला है क्योंकि हमने code में कुछ भी print करने के लिए नहीं दिया था
print statement जोड़ते हैं
terminal में पिछली निष्पादित command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
closing curly bracket के पहले type करें semicolon space print space a square brackets में 2 comma 2
ध्यान दें हमें output capital d मिला है
कैसे जाँचें यदि दिए गए multidimensional array में कोई विशिष्ट index sequence मौजूद है
हम in operator का उपयोग कर सकते हैं
हम यह इस श्रृंखला में पहले singledimensional array में देख चुके हैं
हमें indices के पूर्ण क्रम को parentheses में और commas द्वारा पृथक लिखना होगा
इसे एक उदाहरण में देखते हैं
मैंने test _ multi awk named script पहले ही लिखी हुई है
वह इस tutorial के पेज के code files link में उपलब्ध है
मैंने एक 2 by 2 array परिभाषित किया है जैसा कि हमने पिछली चर्चा में देखा है
फिर मैंने दो if conditions लिखे हैं
पहली if condition जाँचती हैं कि the index one comma one में element मौजूद है या नहीं
हमें multidimensional array के लिए parentheses में index लिखना होगा
यदि condition true है तो यह print करेगा one comma one is present
अन्य़था यह print करेगा one comma one is absent
उसी तरह हम index three comma one में element की मौजूदगी के लिए जाँच करेंगे फाइल का निष्पादन करें
terminal पर जाएं और type करें awk space hyphen small f space test underscore multi dot awk और enter दबाएं
output दर्शाता है one comma one is present और three comma one is absent
एक और उदाहरण देखते हैं
the गए matrix का transpose matrix की rows और columns को बदलकर बनाया जाता है
मैंने file 2darray txt में twodimensional array matrix बनाया है
मैंने transpose awk named code लिखा है
पहले इस awk script के action section में देखें
यहाँ हम row में fields की अधिकतम संख्या की गणना कर रहे हैं और गणना की गई वेल्यू को variable max _ nf में संचित कर रहे हैं
जैसा कि हम जानते हैं nr awk द्वारा processed की गई वर्तमान records की संख्या है nr की वेल्यू max _ nr variable में संचित है
awk input file को पहले record से आखिरी record तक process करेगा
जब awk पहले पहला record processing करता है max _ nr equal to 1 होगा
दूसरे record को processing करते समय max _ nr 2 होगा और यह इसी तरह जारी रहेगा
जब awk आखिरी record processing करता है max _ nr records की कुल संख्या संचित करेगा
अब हमें input file file के data read करना चाहिए और data को two dimensional array में संचित करना चाहिए
for loop में हमारे पास iterator variable x है
x एक से nf तक बढ़ेगा और प्रत्येक पुनरावृति के बाद x 1 से बृद्धि करेगा
x की प्रत्येक value के लिए $x dollar x field x में value दर्शाता है
वह value index nr comma x पर array matrix में संचित होगी
उदाहरणस्वरूप 1comma 1 का matrix वह value संचित करता है जो input file से index 1 comma 1 पर मौजूद है
अतः इस code के साथ awk द्वारा पूर्ण input file को processed करने के बाद matrix array पूर्ण रूप से बन जायेगा
यह input file का पूर्ण data two dimensional array format में संचित करेगा
अब end section में देखते हैं
हमने matrix के transpose को print करने के लिए nested for loop लिखा है
मैं बुनियादी c programming के साथ आपके परिचय को मानती हूँ
code को विस्तार से देखने के लिए यहाँ video रोकें और स्वयं समझें
अब हम सीखेंगे कि multidimensional array को scan कैसे करें
awk में यथार्थ में multidimensional array नहीं है
अतः यहाँ multidimensional array को scan करने के लिए कोई विशेष for statement नहीं हो सकता है
आपके पास array को scan करने के लिए multidimensional तरीके हो सकते हैं
आप इसके लिए split function के साथ for statement संयुक्त कर सकते हैं
देखते हैं कि split function क्या है
और विभिन्न भागों को एक array में रखने के लिए उपयोगित है
syntax निम्न है पहला argument पृथक होने वाली string रखता है
दूसरा argument array का name निर्दिष्ट करता है जहाँ split पृथक किए गए भागों को रखेगा
तीसरा argument separator दर्शाता है जिसका उपयोग string को पृथक करने के लिए किया जायेगा
पहला भाग arr 1 में संचित होता है
दूसरा भाग arr 2 में संचित होता है और इत्यादि
मान लीजिए हम पहले बनाए गए array से indices के मूल क्रम को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं हम यह कैसे कर सकते हैं
मैंने multi _ scan awk named code लिखा है
पूरा code begin section में लिखा है
पहले हमने a named एक array बनाई और ये values इसे असाइन किए
फिर हमारे पास iterator के साथ for loop है
iterator प्रत्येक iteration हेतु प्रत्येक indices values के लिए set होगा मानिए 11 फिर 12 इत्यादि
split function subsep द्वारा पृथक iterator को भागों में तोड़ता है
भाग array arr में संचित होंगे
अतः arr 1 और arr 2 क्रमशः पहला index और दूसरा index रखेगा इस फाइल का निष्पादन करें
terminal पर जाएं type करें awk space hyphen small f space multi underscore scan dot awk एंटर दबाएं
output देखें indices का मूल क्रम पुनः प्राप्त हो गया है
संक्षेप में इस tutorial में हमने awk में multidimensional array बनाना और multidimensional array स्कैन करना सीखा
नियतकार्य के रूप में two dimensional array को 90 डिग्री रोटेट करने और रोटेटेड matrix को प्रिंट करने के लिए एक awk script लिखें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में अपनी समयबद्ध queries post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद